यहां के ग़ाछ खड़े हैं।

सामने टी_वी भी लगा हुआ है सबको खाना खा रहे हैं कोई पानी पी रहे हैं।

ये साइड में फ्लावर है रेड फ्लावर है येलो फ्लावर है ऑरेंज है फिर अगल बगल आदमी बैठे हुए हैं।

और ये येलो कलर का बोर्ड पे लिखा गया है और ऊपर येलो कलर का येलो कलर का पंडाल बनाया गया है।

छोटे छोटे पेड़ पौधा है जिसमें कुछ कुछ लगे हुए है।

कंबल है रंग बिरंगे और बहोत सारे कुर्सी लगे हुए--

और कोई पूजा की तैयारी कर रहे हैं कोई अपने सर पे कपड़ा उठाए हुए हैं।

माल का कलर ब्लू और रेड है सिटी स्टाइल लिखा हुआ है।

इलेक्ट्रिक दुकान की शॉप है यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर के चीज रखे हुए--